ये कोई यमुना जी का नहर है यहाँ पर यमुना जी हैं।

राइट साइड में कुछ लेडीस खड़ी हैं लेफ्ट साइड में कुछ आदमी भी खड़े --

कुछ पेड़ भी सामने रा रहे हैं और सामने एक टावर नजर आ रहा है।

ये कोई अपना मंदिर है साईं बाबा का।

कुछ लोग फावडा लेकर के गड्ढा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के पास स्कूल के बच्चे लगे हैं वो खड़े हैं।

इसमें कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस चल रही है और --

हाथ में पकड़े हुए हैं लोहे की छड़ सा और कुछ आ लकड़ी पड़ी हुई है राइट साइड में कुछ गड्ढे भी सामने की तरफ नजर आ रहे हैं सामने की साइड कुछ मकान भी है।

कुछ लोग सामने के साइड मोबाइल लेके फोटो खींच रहे हैं नीचे बच्चे पढाई कर रहे हैं।

वे लोग कोई त्योहार बना रहे हैं एक आदमी लेफ्ट साइड में खड़ा है पेड़ उसके बगल में हैं।

इसमें कुछ लोग पढाई कर रहे हैं एक टीचर बच्चो को पढ़ा रहा है।

कुछ लेडिज भी हैं कुछ बच्चे भी हैं और वो सारे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।